और किनारे मे बोहत ही अच्छा शहर बसा हुआ है।

इस पिक्चर में रॉयल एनफील्ड का सारा बाइक है।

इस पिक्चर में बहुत बड़ा-सा गार्डन है गार्डन के सामने--

और बहुत सारे गुलाब भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक ऑटो जा रहा है एक--

इस पिक्चर में वाशिंग मशीन बिकते हुए दिख रही है| सामने एक वाशिंग मशीन है।

राइट साइड में एक इंसान बैठा है जो की बिलिंग कर रहा है और सामने में कुछ आयरन भी है।